खाना खा रहे हैं कुछ झाड़ू लगा रही है।

कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं।

किस चीज का भोज चल रहा है।

यह एक पार्किंग एरिया है जहां बहुत सी कार पार्क है।

कुछ एम लोग भी खड़े हैं।

कुछ लोग एक लाइन में खड़े हैं।

जहां बहुत सीरिया है।

यह एक पुराना और भव्य मंदिर है।

जहां महिलाएं आकर।

सेलिब्रेट होने वाली है।

पूरा बैलून से डेकोरेट किया गया है।

यहां चारों तरफ पीर ही पीर है।

और एक आदमी बस की तरफ चल रहा है।

शैंपू साबुन चावल दाल।

दुकान के पास खड़े हैं।

बहुत से चेयर्स है माइक्स है लाइट है।

यह एक पार्क है जहां हरे घास है।

हाथ खड़े हैं बड़े-बड़े हैं।

यह एक मस्जिद हैजो काफी दूर है बहुत से करकट के घर है।

फिर है चारों तरफ मस्जिद के।

महजिद मुसलमानो की पूजा करने की जगह होती है।

स्ट्रेट खड़े हैं कुछ टीचर इन्हें डांस स्टेप बता रहे हैं।

और ये लोग ध्यान से सुन रहे हैं।

फिर स्टार्ट करेंगे।

बहुत लोग इसमें जुड़े हैं कुछ महिलाएं भी हैं और कु --

मर्द भी है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं।

यह ब्लू रंग की घर है।

और इस घर का नाम है ऐ बाए फोर्टीन नंबर है।

और टेबल पर पानी की बोतल रखी है।

जहां बहुत भक्त।

यह एक प्लेग्राउंड है जहां कुछ बच्चे।

यह बड़ा सा मैदान है चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं।

जहां एक घर बन रहा है।

छत पर एते लकड़ी एक ड्रम रखा है।

प्रकार की मिठाई मिलते हैं।

चल रहा है।

फोन यूज़ कर रहा है।

एक महिला पालथी डालकर बैठी है।

छोटी सी दुकान लगाई है।

जहां मधुवानी पेंटिंग।

लकड़ी के कुछ छोटे ब पेन बॉक्स कुछ मधवानी फ्लेम्स --

कुछ लोग लाइन मै क्वे मै।

जहां बच्चों की ड्रेस लगी है।

बच्चों के लिए कपड़े खरीदती नजर आ रही है।

दाम के बारे में समझा रहे हैं।

उन्हें कपड़े दिखा रहे हैं।

यह जूका है जिसमें एक।

और यह बाग बहुत देर से सोया है।

छत धुलाई हो रही है।

रेत को सीमेंट से डाल रहे हैं।

कुछ लोग दूर बैठकर प्लास्टर को मिला रहे हैं।

छोटे-छोटे खास है एक छोटा सा।

यह एक स्टेडियम है।

यहां छोटे-छोटे हरे घास अच्छे लग रहे हैं दिखने में।

ऊपर से नेट लगा हुआ है।

फैन कुछ चल रहे हैं कुछ बंद है।

उसकी सेवा कर रहे हैं।

जो एक डांस क्लास है।

जहां कुछ लड़के लड़कियां डांस के स्टेप सीख रहे हैं।

प्रोजेक्ट मिला है टीचर के द्वारा --

कुछ बच्चे घर चले गए हैं।

एक स्टाफ उनका ऑर्डर ले रहा है।

एक आदमी अकेले बैठकर फोन देख रहा है।

यहां बहुत से सामान रखे हुए हैं।

यह एक स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है।

इ मॉल है नागल मॉल ।

जहां लोग कपड़े खरीदने गेम्स खेलने जाते हैं।

अ शादी की शॉपिंग फेस्टिवल की शॉपिंग करने कुछ लोग बाहर सिरी पर --

कुछ लोग अंदर कपड़े देख रहे हैं।

और बालू भी रखा हुआ है।

जहां बहुत सी बाइकें लगी हुई हैं।

जो पूरी बैलून से डेकोरेट है।

एक आदमी टी-वी में कुछ देख रहा है।

यह एक सिंगर का घर है।

म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं।

एक कंप्यूटर है।

कंप्यूटर है उसके साथ दो स्पीकर भी है।

जो एक प्राइमरी स्कूल है।

और टीचर उन्हें गाइड कर रही हैं।

यह एक लेडीज जीम है।

यहां महिलाएं अगर जिम करती हैं।

चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहा है।

जो एक डांस क्लास है जहां--

अपनी छबी मिरर में देखकर--

यह एक डांस स्टूडियो है।

यह एक नर्सरी है जहां तरह के--